रखी हुई हैं यहां पर एक--

यहां पर कई अह कई पुराना किला है और यह लाल रंग का --

यहां पर कई सारी हरियाली--

एक पेट्रोल पंप का चित्र है और इसमें लिखाया गया है नो फायर --